सामने बड़ा-सा मैदान नज़र आ रहा है मैदान में पतला-पतला रास्ता बना हुआ है किनारे-किनारे का ब्लैक कलर की बाउंड्री बनी हुई है।